आ दूसरी तरफ रेक्स मे बहुत सारे हैंड वाशेस रखे हुए हैं | सभी हैंड वाशेस अलग अलग कंपनीज के है।

आ पेड़ लगे है पेड़ पे लाइटिंग्स की हुई है आ चेयर्स पे लोग बैठे हुए है।

आ बाहर कुछ ऑटो रिक्शा खड़े है लोडिंग रिक्शा खड़े हुए है ई-रिक्शा खड़े है कुछ बाइक्स खड़ी हुई है।

इमेज मे एक रिक्शा है | आ रिक्शे के साथ एक जेंट्स खड़े हुए हैं ।

टिश्यू पेपर्स रखे हुए है ।

आ पर्पल और ऑरेंज कलर के बलून से डेकोरेशन किया हुआ है।

इमेज में नदी है नदी मे दो बॉट्स चल रहे है ।

इमेज में कुछ लड़के लाइन से फ़र्श पर बैठे हुए हैं सभी के पास पेपर और कुछ आर्ट वर्क का समान रखा हुआ है।

इमेज में एक टेबल पर कुछ चीजें रखी हुई है।

इमेज में एक ब्लैक कलर की बस खड़ी हुई है आ बस में पैसेंजर बैठे हुए है एक लड़का बस में चढ़ रहा है।

आलू बहुत गंदे दिखाई दे रहे है आ सभी आलुओं पर मिट्टी लगी हुई दिखाई दे रही है।

इमेज में लेडीज और जेंट्स बैठे है मछिलयाँ बेच रहे है।

उपकार मेडिकल हॉल लिखा हुआ है।

पेड़ लगे हुए है घास उगी हुई है।

आ दीवाल पर बहोत सारी घड़ियां लगी हुई है।

आ बाइक्स खड़े है दो साइकिल खड़ी हुई है एक साइकिल पर कुछ सामान की थैली ठगी हुई है ।

आ कुछ लड़के दोनों तरफ लाइन लगा से खड़े हुए है एक लड़का बैठा है सभी ने टॉपी पहनी हुई है ।

पेड़ लगे हुएदिखाई दे रहे हैं ।